और उसके आगे एक पत्थर का लगा हुआ है जिस पे घड़े रखें हुए--

और उस तरफ भी एक छोटे छोटे मकान जैसे दिखाई पड़ रहे हैं।

और इस तरफ नीले कलर की मिट्टी जैसी बिछी हुई है।

इसमें हल्की-हल्की क क काले कलर की धारियां बनाई गई है।

एक पिलर जैसे एक आदमी बाइक के पास खड़ा हुआ कुछ फोन में चला रहा है।

बस भी खड़ी हुई है वह पीले कलर की है और ग्राउंड बना हुआ है।

यह एक पेट्रोल टंकी दिखाई पड़ रही है इस टंकी पे एक बस भी खड़ी हुई है ताला भी खड़ा हुआ है।

जिसपे एक मुस्लिम महिला और कुछ और महिलाएं भी हैं आदमी भी हैं बहुत सारी बाइक खड़ी हुई हैं।

इस तरफ एक छोटी सी पुल जैसा बना पुलिया जैसी बनी उसमें पानी गंदा भरा हुआ है।

इसमें कुछ चाय पत्ती के पैकेट इधर उधर बहुत सारे भरे हुए हैं।

और इसमें कांच के दरवाजे भी लगे हुए हैं और अंदर पंखे और लाइट्स भी जल रही हैं।